ये पिक्चर देख के साफ साफ पता चलता है कि गणपति जी की फोटो है ये।

और यहां पे काफी फाइलें वगैरा रखी हुई दिखाई दे रही है और ये काफी अनोखा व्यू है यहां पर।

यहां पर दो कंप्यूटर हैं चेयरस् हैं कुर्सियां हैं और पीछे से धूप की रोशनी विजिबिलिटी आई हुई दिखाई दे रही है।

जो फर्श वगैरा है काफी ही अ संगमरमर से बना हुआ दिखाई दे रहा है।